उम सब बड़ा सुन्दर सा लगे है देखे में |

तब देखने में बड़ा सुन्दर लगे छे पहाड़ हय।

बहुत अच्छा लगय छै तार ऊर सब हेय बहुत अच्छा लगय छै।

रोड हैय रोड पर पानी लागल हय स्कूल हय आदमी सब जाय से आवय सै।

ऊ एक घर हय बड़ा सुन्दर सजायल हय सब सजायल है सब रंग से बोर्ड से बड़ा सुन्दर लगाय से।

सब आदमी सब अइसे सब बोहोत अच्छा लगय से मिठाई से रंग-बिरंग के सब है सब।

बोहोत अच्छा लगे से शीशा सब लागल सब इ सब बहुत अच्छा लगे से देखेमें।

हरा-हरा गाछी सब है गेट सब है बहुत अच्छा लागे छे देखे में |

आदमी सबेन सब देखे से बोहोत अच्छा लगे से बोहोत अच्छा है।

बहोत अच्छा लगै छ देखेमें सब जाई छे आवै छे बहोत अच्छा लगै --

सब बड़ा सुन्दर लगे छे देखेमें देखेमें खूब अच्छा लगे --

सब के धइले बहुत अच्छा लगय छै देखे मे।